जहां पे बहोत सारे आदमी और औरते पूजा करते हुए नज़र आ रहे है।

और एक टेबिल पे खाने के जूठे बर्तन भी बहोत सारे रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

जहां पे बहोत सारे अलग अलग तरीके के काली थैली में पैक पौधे रखे हुए हैं।

जो खड़े हुए भी दिखाई दे रहे हैं।

जहां पे उसका नाम है किंग्स टैटू --

यहां पे कुछ बहुत सारी लाइटें भी इसमें जली हुई दिखाई दे रही है।

उसके पास में एक पीले कुर्ते पजामे में भी लड़का खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

और नीचे की ओर एक बड़ा सा ऑरेंज कलर का डस्टबिन भी रखा हुआ नजर आ रहा है।